किसमे किस पुतला खड़ा हुआ है इसने रेड एंड --

ये एक रे क्षेत्रीय रेल परीक्षा संस्थान दिख रहा है। इसका एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि व्हाइट और --

यहाँ किले का सीन दिखाई दे रहा है। काफी सारे खिड़की दरवाजे दिख रहे हैं।

काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए है बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

माला टंगी हुई है। सामने कलरफुल सी बनी हुई है। लोग दिखाई दे रहे हैं।

और लाइटिंग लगी हुई है। काफी बच्चे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक भगवान जी की स्टेचू है जोकि एक मंदिर है।